नमस्कार variables and operators in awk command पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम user defined variables
operators
हम कुछ उदाहरणों की मदद से यह करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1604
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपको इस website पर लिनक्स के पहले tutorials को देखना चाहिए
आपको सामान्य programming भाषा जैसे c या c ++ में उपयोगित basic operators के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया हमारी website पर समरूपी tutorials देखें
awk filter की power और programming भाषा का संयोजन करता है
अतः यह variables constants operators को supports करता है
देखते हैं कि awk में variable क्या है
variable एक पहचानकर्ता है जो value संदर्भित करता है
awk userdefined variables और builtin variables दोनों को supports करता है
हम इस tutorial में userdefined variables के बारे में सीखेंगे
userdefined variables के लिए variable घोषणा आवश्यक नहीं है
variables को स्पष्टतया आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है
awk स्वतः ही उनको zero या null string में आरंभ कर देता है
variable अक्षर से शुरू होते हैं और अक्षर अंक और underscores के साथ जारी रहते हैं variable केससेंसिटिव होते हैं
अतः बड़े s के साथ salary और छोटे s के साथ salary दो भिन्न variables हैं
अब कुछ उदाहरण देखते हैं
ctrl + alt और t कीज दबाकर terminal खोलें
terminal पर type करेंawk space opening single quote opening curly brace small x equal to 1 semicolon capital x equal to double quotes में capital a semicolon small a equal to double quotes में awk semicolon small b equal to double quotes मेंtutorial
type करें print x enter दबाएं
print capital x enter दबाएं
print a enter दबाएं
print b enter दबाएं
print a space b enter दबाएं
print small x space b enter दबाएं
print small x plus capital x closing curly brace closing single quote और enter दबाएं
चूँकि हमने फाइल का नाम नहीं दिया है awk को standard input से कुछ input की आवश्यकता होगी
और इसलिए हम कोई अक्षर type कर सकते हैं a type करें और enter दबाएं
variables को संख्या के साथ आरंभ कर सकते हैं
इसे single character या string के रूप में value के साथ भी आरंभ कर सकते हैं
यदि value character या string है तो variable को double quotes में value के साथ आरंभ किया जाता है
हम variables की values देख सकते हैं
ध्यान दें कि छोटे x और बड़े x को भिन्न variables माना जाएगा
यह प्रमाणित करता है कि variables casesensitive होते हैं
साथ ही यह दर्शाता है कि दो strings को कैसे श्रेणीबद्ध कर सकते हैं
यहाँ variables छोटा a और छोटा b श्रेणीबद्ध हैं
string concatenation operator केवल एक space है
इसी तरह जब हम छोटे x को श्रेणीबद्ध करते हैं जो संख्या और string b है x string में स्वतः बदल जाता है
स्वतः परिवर्तन string में क्यों होता है
ऐसा इसलिए है क्योंकि awk यहाँ x और b के मध्य एक string concatenation operator space पाता है
अब छोटे x plus बड़ेx का output देखें
अतः x स्वतः ही अंकीय शून्य में बदल जाता है
अब तक हमने कुछ operators को देखा है देखते हैं कि हम अन्य कौन से operators का उपयोग कर सकते हैं
expressions में कई operators का उपयोग किया जा सकता है
कृपया video रोकें और यहाँ दिए गए सभी operators देखें
मुझे लगता है कि आप इन मूल operators से परिचित हैं
यदि नहीं तो c और c ++ श्रृंखला में operators पर स्पोकन tutorials के लिए हमारी website पर जाएं
मैं इन सभी operators के काम पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रही हूँ
केवल string matching operator अपवाद है जो आपके लिए नया हो सकता है
awkdemo txt named file code files link में दी गई है कृपया इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड़ करें
terminal पर जाएं ctrl और d कीज दबाकर पिछली प्रक्रिया को समाप्त करें
terminal साफ करें
अब cd command का उपयोग करके उस folder पर जाएं जिसमें आपने awkdemo txt file सेव की है
अब इस file पर एक नजर डालते हैं
मान लीजिए कि हम उन छात्रों को ढूंढना चाहते हैं जो उत्तीर्ण हैं लेकिन उनके अंक 80 से कम हैं
इस मामले में हमें दो भिन्न fields की तुलना करने की आवश्यकता है
ऐसी स्थिति के लिए हम awk s relational operators का उपयोग कर सकते हैं
ये operators strings और numbers दोनों की तुलना कर सकते हैं
तो terminal पर type करें
यह command कई चीजें दर्शाती है
दूसरा हम number के साथ केवल चौथे field की तुलना कर सकते हैं
तीसरा हम देखते हैं कि ampersand operator का उपयोग करके हम दो या अधिक तुलनाओं को जोड़ सकते हैं
विशिष्ट numbers या strings के बजाय हम regular expressions की भी तुलना कर सकते हैं
जैसा कि हमने slide में देखा इस उद्देश्य के लिए हमारे पास tilde और exclamation tilde है
अब मान लीजिए हम computer science के उन छात्रों को ढूंढना चाहते हैं जो passed हो गए हैं
क्योंकि computers छोटे और बडे दोनों c में हो सकता है हम regular expression का उपयोग करेंगे
हम type करेंगे
यदि हम तुलना का नकारना चाहता हैं हम exclamation tilde operator का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं
अब हम उन सभी गैरcomputer छात्रों की सूची चाहते हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं
पिछली command प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं
dollar 3 के आगे exclamation symbol जोड़ें और enter दबाएं
अगला उसी फ़ाइल में खाली lines की संख्या गिनते हैं
file खोलें और देखें कि यहाँ कितनी खाली lines हैं अतः इसमें 3 खाली lines हैं
awk awk का उपयोग करके खाली lines की खंख्या गिनते हैं type करें
हमें उत्तर के रूप में 3 प्राप्त हुआ
caret चिन्ह line के प्रारंभ का प्रतीक है जबकि dollar line के अंत का प्रतीक है
इसलिए एक खाली line regular expression caretdollar द्वारा मेल खाएगी
x ध्यान दें हमने x की value इनिशिलाइज नहीं ही है
यह command हमें खाली lines की बढ़ती संख्या देता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार एक खाली lines मिलती है x बढ़ेगा और फिर प्रिंट होगा
हमारी पिछली command में हमने खाली lines की बढ़ती संख्या देखी लेकिन हम केवल खाली lines की कुल संख्या प्रिंट करना चाहते हैं
तो हमें पूरी file के पारगमन के बाद केवल एक बार x print करना होगा
हम एक शीर्षक भी देना चाहते हैं output का अर्थ we है
ऐसी आवश्यकताओं के लिए awk begin और end sections प्रदान करता है
begin section में पूर्वप्रक्रमण के लिए प्रक्रियाएं हैं
यह section main input loop के निष्पादन के पहले निष्पादित होता है
end section में प्रक्रमण के बाद के लिए प्रक्रियाएं होती हैं
इस section का निष्पादन main input loop समाप्त होने के बाद होता है
सीखते हैं कि इसे कैसे करें
front slash में caret symbol dollar symbol space curly braces में x equal to x plus 1 एंटर दबाएं
end space curly braces में print space x close single quote space awkdemo txt और enter दबाएं
देखें हमें इच्छित output नहीं मिला है हमें output 3 प्राप्त होना चाहिए क्योंकि हमारे पास फाइल में 3 खाली लाइन्स हैं
आपको क्या लगता है क्या हुआ है
अतः command को संशोधित करें
terminal पर पिछली निष्पादित command प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं
लोवरकेस end को अपरकेस end में बदलें
अब output में खाली lines की कुल संख्या प्रदर्शित होती है
आगे उन सभी छात्रों का औसत वेतन पता करते हैं जो हमने awkdemo txt फ़ाइल में पाया था
उसे प्राप्त करने के लिए terminal में दिखाए गए अनुसार command type करें और enter दबाएं और हमें इच्छित आउटपुट प्राप्त होता है
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
operators
नियतकार्य के रूप में प्रत्येक line print करें जहाँ आखिरी field की value 5000 से अधिक है और छात्र electrical department से संबंधित है
output में शीर्षक average marks के साथ सभी छात्रों के औसत अंक print करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
क्या इस tutorial पर आपके पास प्रश्न है कृपया इस साइट पर जाएं
minute और second चुनें जहाँ पर प्रश्न है संक्षिप्त में अपना प्रश्न बताएं हमारी टीम से कोई उनका उत्तर देगा
spoken tutorial forum इस tutorial पर विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
कृपया उन पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न post न करें
यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को प्रशिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ